के पास में एक ट्रैक्टर है।

यहाँ पर दाम कम और फैशन हर दम रहता है।

देखिये लाइट लगी हुई है।

और देखिये सब सेंट्रिंग कस रहे हैं।

और उधर देखिए खेत है खेत में देखिए सरसों।

फील्ड है और इसमें फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट हैं।

इस तस्वीर में देखिये ये --

मोटर साइकिल लगा हुआ है वहां पे और छोटे बच्चे सब --

सारे लोग इकट्ठा हो के--